सामने एक बहुत ही बड़ी बड़ी मशीने --

नजारा देखने को मिल रहा है ये दिन का समय है और सब कुछ दिखाई दे रहा--

साइड में एक पाइप भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर चाय देसी अर्बन चाय यहां पर दिखाई गई है।

और यह देखने को मिल रहा है पहाड़--

उसके जू उसके सुंदर जूस पर देख सकते हैं आप सभी कितने फल फ्रूट लगे हुए हैं यहां पर एक--

यहां पर आप देख सकते हैं एक आदमी दिखाई दे रहा है जिस आदमी ने ब्राउन कलर कोट डाला हुआ है और गले में टाई लटकाए हुए है एक सप--

यहां पर आप देख सकते हैं आसमान में घने बादल दिखाई दे रहे हैं यह दिन का समय है और दृश्य भी दिखाई दे रही है यहां पर दो आदमी काम करते हुए --

यहां पर बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा हो और मंदिर में राधा कृष्ण की तस्वीर दिखाई दे रही है बहुत ही सुंदर नजारा है यह मंदिर--

देखने को मिल रहा है सामने दान पत्र भी रखे हुए हैं और वाइट कलर का पर्स भी दिखाई दे रहा है सामने --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

कोट दिखाई दे रहा हैं उसने व्हाईट कलर के कपड़े डाले हुए हैं अब दूर दूर तक देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा देखने को मिल रहा हैं।